कई लोग दिखाई दे रहे है।

वॉल पर कुछ फ्रेम लगी हुई है।

इसकी सीट निकाली हुई है और एक--

बोर्ड पर लिखा हुआ है नेशनल ऑटो पार्ट्स ।

ये एक बोर्ड दिख रहा है वी शक्ति नाम का--

यहां हमें एक बड़ा टेबल दिख रहा है।

हर जगह बोटले रखी हुई है।

सारे के सारे पिक लगे हुए हैं।

यहां हमें एक बिल्डिंग दिख रही है।

यहां हमें घास नजर आ रही है।

और आसमान भी नजर आ रहा है।

अंदर बहोत सारे कपड़े रखे हुए हैं।

दरवाज़ा दिखाई दे रहा है खिड़की दिख रही है।

और फ्लावर पॉट भी दिख रहे हैं।

गुफा के अंदर भी लोग खड़े हुए है।

फूलों से और कपड़ों से पीछे हमें एक बस दिख रही है।

यहां हमें एक काउंटर दिख रहा है।

एक बंदा दिखाई दे रहा है।

रस्सी पर कपडे लटके हुए दिख रहे हैं।

यहां हमें व्हाइट कलर के स्टंप दिख रहे है।

यहां हमें कांच का एक काउंटर दिख रहा है।

यहां हमें माइक्रोमैक्स कंपनी का एक लोगों दिख रहा है।

और आसमान नजर आ रहा है।

लाइटे नजर आ रही है और ए_सी भी दिख रहा है।

यहां बहोत सारी कार नजर आ रही है।

एक लड़का खड़ा हुआ दिख रहा है।

और ट्रक उल्टा पड़ा हुआ है।